और यहां पे लाल रंग का देरा--

बहुत सारे आदमी खडे हुए हैं और यहां पे कुछ आदमी बैठे भी हैं।

आप देख सकते हो आसमान भी दिख रहा हैं।

पाव पॉवर हाउस है यहां पे--

और यहां पे ये जिम है और यहां पे--

और पीछे आप देख सकते हो ये ग्राउंड है।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

बिक रही है ट्रेन हरे रंग की है और यहां पे--

ये यहां पे आप देख सकते हो ये चार पांच--

रहे हैं और आप देख सकते हो--

यहां पे आप देख सकते हो लाइटों का अच्छा--

देख सकते हो आलू पे मिट्टी लगी हुई है।

पर्दे हैं और यहां पे--

ये यहां पे आप देख सकते हो ये गेट लगे हुए हैं।

हुआ है ये रहे हैं और यहां ।